यह एक दुकान की इमेज है जिस पर शुभ मोटर्स लिखा हुआ है यह--

इस चित्र के माध्यम से हमें किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाई देता है।

टॉफियों की बॉटल रखी हुई है बिस्किट के पैसे की रखे हुए हैं।

यह अं चित्र भारतीय स्टेट बैंक का है ग्राहक सेवा केन्द्र है जिसे क्वेस बैंक कहते है लोकसेवा केन्द्र है।

फोर व्हीलर खड़ी हुई है जिसमें यात्री बैठेंगे।

नाई की दुकान है जिसमें बाल काटने का काम किया जा रहा है।